इस चित्र मे एक फ्लाइओवर दिख रहा है उसके पीछे कुछ पेड़ भी लगे नजर आ रहें हैं।

ये काफी कलरफुल है ये घरों मे पाला जाता है ये इंसानी भाषा बोल सकता है ।

और लाल बस पे गोपिया लिखा हुआ है।

नाँव मे एक आदमी बैठा हुआ हे उसके पास एक बड़ा सा पेड़ लगा हे आस पास छोटे छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।

दो बतके एक पाइप पर बैठी हुईं हैं एक पत्थर पर बैठी हुई है एक पानी मे तेरती हुई नजर आ रही है पीछे कुछ पेड़ लगे हुएं हैं।

तस्वीर मे कूछ बतखें दिखाई दे रहे है जो किसी गार्डन में घूम रही है।

एक किनारे पर कुछ सीढ़िया बनी है इस किनारे पर तीन नावे खड़ी हुई है एक टेबुल भी रखी हुई है ।

इस तस्वीर मे दिखाई दे रहे पक्षी लव बर्ड्स हैं जो की--

दूसरे किनारे पर कुछ पेड़ नजर आ रहे है|

इसमे बैलून से सजावट की गई है और लाइटे भी लगी दिख रही है ।